यहाँ पर एक होटल है जिसमें कुछ टेबल और चेयर लगी हुई हैं डीनर टेबल और चेयर | वहाँ खाने के टेबल और चेयर लगे हैं जिसमें कुछ प्लेट्स रखी हैं।

गिलास रखे हुए हैं कुछ टिशु पेपर रखे हैं एक दीवाल पे बड़ा-सा हार्ट बना हुआ--

और पेड़ लगे हैं ग्राउंड में | एक बड़ा-सा पेड़ लगा हुआ है और ग्राउंड में कुछ दुर्बा बगेरा लगी है| और एक यहाँ पर क्रिकेट अ कुछ लोग क्रिकेट खेल --

--और यहा पर एक बाईक है जो ब्लू कलर की बाईक है खड़ी हुयी है जिस पे के एक लड़का बैठा हुआ है जिसके पास जो कि ग्रीन से कलर की शर्ट पहने हुए है।

यहाँ पर एक क मकान बना हुआ है और जिस पर कुछ यहाँ पर पेंट किया हुआ है।